फोटो भी किसी ऊँचे झूले पर से ली गयी है।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

यह एक नदी का फोटो है जहां एक खुला मैदान भी है और नदी खुले मैदान से टकरा कर दो दिशा में बट गई है।

एक बोट सर्फिंग के दौरान ली गई पिक्चर है जहां एक आदमी दूसरे आदमी की सहायता से बोट सर्फिंग का आनंद ले रहा है।